और ये घास अगल बगल में घास भी है।

दो तीन पीले कलर के गुब्बारे भी लगे हुए हैं।

और शीशे से भरे दो टैंक रखे हुए है।

और बहुत खड़े हुए हैं साइड में कुछ परदे लग रहे हैं।

यह एक पुराना किला है।

और एक झोपड़ी लग रही है जिसमें कि गाड़ी है।

उसके सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं और दो तीन सिलेंडर रखे हुए हैं।

और एक काउंटर रखा हुआ है और एक स्कूटरी पर एक लाल कलर का थैला--

और एक बल्ब लगा हुआ है।

यह ए एक बू दु एयरटेल की दुकान है जिसके ऊपर एक एयरटेल का बोर्ड लग रहा है और --